हरे रंग की तालपत्री दिखाई दे रहा है भूरे और लाल रंग का डस्टबिन रखा है।

व्हाइट रंग का बिल्डिंग नज़र आ रहा है ग्रे कलर का गेट दिखाई दे रहा है जिसके बाजू में कुछ कचड़े रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

व्हाइट रंग का दिवाल नजर आ रहा है जिसमें भूरे रंग का बोर्ड लगा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

येलो और रेड कलर का स्टेज बना हुआ है जिसके ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति--

एक पंडाल दिखाई दे रहा है कुर्सी पर लोग बैठकर देखते हुए नजर आ रहे हैं।

येलो कलर का बॉर्डर बना हुआ है भवन के बाहर लाल रंग की बोर्ड में सिंधु भवन लिखा हुआ नजर आ रहा है वाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

सामने की दीवार में एक कुछ बना हुआ है एग्ज़ॉस्ट फैन नजर आ रहा है।